एक ठो बारी है मकान है मकान का कलर लाल है।

मंदिर के नि उधर सीढ़ी है और दो साइड में पेड़ आदमी लोग बैठे है।

ई प्रशिक्षण केंद्र ह। आदमी बैठा हुआ है। बाइक भी दिखाई दे रहा है। एक ठो कार --

और उधर में लोहे का खाचा बना हुआ हैथोड़ा रोड भी भी खड़ा हैउधर एक ठो छोटा घर है |

दो धर में पेड़ हैं दो धर में आदमी खड़ा हुआ हैं बोहोत सारा भीर लगता है ।